ब्लैक टी कॉफ़ी जिन का ये स्टोल है | इस में काउंटर बना हुआ है | एक टेंट लगा हुआ है |

बहुत अच्छा लग रहा है क्यारी बना-बना के इसमें छोटे-छोटे पौधे हैं फुल लगा हुआ है नारियल का भी पेड़ दिख रहा है देखने मे अच्छा है।

क्षेत्र है पहाड़ ऊँचे-ऊँचे दिख रहे हैं और पहाड़ के ऊपर छोटे-छोटे पेड़-पौधे हैं हरे भरे हैं देखने में अच्छा लग रहा है ऊपर आसमान दिख रहा है आसमान में बादल छाए हुए हैं नीचे छोटे-छोटे राऊटी गिराया गया है इसमे रहने के लिए बॉर्डर इलाका हो सकता है देखने में अच्छा लग रहा है।